जिसमें एक फादर नोवेल पढ़ते हुए खड़े हैं।

जो की निर्माण आधीन चल रही है।

दिखाई दे रही है जिसका नाम कौटिल्य एकेडमी है यह जबलपुर में स्थित है।

बहुत सी खाने की टेबल चेयर रखी हुई है।

इस ट्रक पर वर्षा बोरवेल लिखा हुआ हैं।

यह तस्वीर एक स्कूल की है।